यहाँ पर एक शॉप दिख रही है जिस में कुछ जूलरी --

और लेडीज की जूलरीस और अदर सामान भी दिख रहा है जिसमे दो बैनर टंगे हुए हैं पंद्रा -पंद्रा रुपे --

ओर पीछे साईड में बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं पेड़ के अ-ए-अ गोलाकर आकृति में।

जो दिख रहे हैं और पेट्रोल पंप पे कोइ भी नहीं है एकदम खाली दिख रहा है।

कुछ हरियाली के कारण हरा है और सामने से इसके --

ओर उनकी ड्रॉइंग देखने के लिऐ एक टीचर सामने खड़ी हुई है जिन्होंने सफेद कलर के कपड़े पहने है और इस्कूल का कलर पीले और लाल कलर का ह।

की बाउंड्री कि हुई है पीले कलर की जाली से जिसपे कुछ एक कपड़ा ब्लैक कलर का काले कलर का सुख रहा है।

यहा पर सामने बाबा साहेब अंबेटकर की एक --

हरे कलर की टी-शर्ट पेहनी है जो बहुत ही स्पीड से बोट को आगे की तरफ ले जा रहा है।

ओर पीछे की तरफ एक दीवाल दिख रही है जिसमे लाल कलर के कपड़ों मे एक व्यक्ति की फोटो बनी है जिसने ऑरेंज कलर की टोपी पेहनी हुई है।

और इनके आस-पास बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं नीचे मिट्टी है कच्चा है और इसके साइड वहाँ पर बकरियाँ खड़ी हुई हैं।

और ये उ इस ये जो जेली है ये किसी रस्सी के सपोट से बंधी हुई है जो --

सामने की तरफ से रस्सी ऊपर की तरफ जा --

ओर इसके गेट कुछ गुलई मे बने हुए है गोल आकृति में।

आस-पास में ओर ओर मशीन के टूल्स रखे हैं एक्सरसाइज़ करने के लिए।

नीली लाल पीले ऑरेंज कलर के फूलों की बहोत सी --

बहुत से पेड़ लगे हुए हैं और सामने की तरफ एक साइड में घर है और एक साइड में कुछ ठेला खड़ा हुआ है जिस में --

कुछ पोर्शन दिख नहीं रहा है बाकी जो लिखा है वो वेलकम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक पेट्रोल पंप है जिसपे एक इंडियन ऑइल का बोर्ड लगा हुआ है जो पीले कलर का है और नीले पे व्हाइट कलर से लिखा हुआ है।